यहाँ पे बोहोत सारे खेत हैं । इन खेतों में बोहोत सारा पानी भरा हुआ है और इन खेतों में कुछ रोपा गया है ।

यह एक आंगनबाड़ी केंद्र है। इस आंगनबाड़ी के बाहर एक बाइक खड़ी है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में तीन-चार कमरे बने हुए हैं।

यह एक जगह है । इस जगह पर बहुत सारे बालू रखें हूए हैं । इस बालू पर तीन आदमी बैठा हुआ है ।

इस स्कूल के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इस स्कूल के बाहर बहुत बड़ा खाली जगह है।